शॉप है यहां पर बहुत सारे सामान रखा हुआ है।

पियानो सा बज रहा है इसमें प्लस का निशान भी है।

सब टेबल पे रखी हुई है जो कांच के है और नीचे इसके व्हाइट कलर का पेंट किया हुआ है।

यहां पर कुछ पेड़ भी लगे हुए है।

ब्राउन कलर की गाय भी है यहां पर लोहे का गेट भी--

लोहे के पाइपें लगी हुईं हैं जिसपे एक आदमी पेंट कर रहा है एक बच्चा भी खड़ा--

ब्लू कलर की टेंट लगा हुआ है और उस साइड में हुई है यहां पर हरे हरे--

दीवालों पर ग्रीन कलर का पेंट किया हुआ है।

कुछ कैमरे वाली फोटो खींचे हैं यहां पर कुछ तारें भी पड़ी हैं और यहां पर कुछ--

यह एक बजार है बजार में बहुत भीड़ है यहां पर साइड में एक--

छत पर बहुत सारे लट्टू लगे हुए हैं एक स्टेज पर एक आदमी खड़ा है।

दो आदमी सही कर रहे हैं और इधर एक बहुत सी स्कूटी और बाइके भी खड़ी हुई हैं इधर एक--

अ ब्लू कलर की एक्टिवा भी खड़ी हुई है।

यह एक बड़ा स्विमिंग पूल है जहां पर हरी घासें भी लगी हुई हैं स्विमिंग पूल के बाहर एक लोहे की पाइप लगी हुई है यहां पर--

यह एक बड़ी सी दुकान है जिसके बाहर पंजाडीया लिखा हु--

दीवार में कांच का शीशे का गेट भी लगा हुआ है उसके अंदर--

यह एक बड़ा सा जिसके ऊपर शेड डली हुई है नीचे--

दो प्लेटें भी रखी हुई हैं जिसमें--

टाइल्स भी रखे हुए है एक रोसनदान भी है।

उस पे लिखा हुआ हे चाइल्ड डिवेलप्मन्ट सेंटर ।